यह एक पार्क है जो बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गए है बहुत दूर दूर से यहां देखने के लिए आते हैं घूमने के लिए आते हैं बहुत ही अच्छे एवं बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है एंड बहुत ही सुंदर लगते है देखने में यह पार्क दूर-दूर से लोग यहां देखने के लिए आते है अब बहुत ही अच्छी जगह बनाए गए है बहुत ही नामी पार्क है।

यह एक गुलाब है जो बहुत ही सुंदर है एंड बहुत ही अच्छे है हम बहुत ही अच्छे कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है बहुत ही नामी ही फूल है गुलाब रेड गुलाब तो और नामी ही फुल हैं इसे बहुत से पूजा में भी काम आते शादियों में भी काम आते हैं।

लोहा का सामान खरीदने के लिए आते हैं केवल यहां ट्रक गाड़ियां से लोहा का सामान लेकर जाता है।